और उसके पीछे बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

और उसमें ग्रीन कलर की गोल गोल कुछ बनी हुए हैं।

सामने में एक स्विमिंग पूल नजर आ रहा ह।